हैलो गाइज देख सकते है यहाँ पे निर्त्य प्रोग्राम ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे-कैसे और यहाँ पे कोच सब कुछ सीखा रहे हैं दीदी लोग को गर्ल लोग को ऐसे करो वैसे करो देख सकते है और काफी

यहाँ डांस कर रहे हैं यहाँ पे ये फिलहाल ही में बना देख सकते है लाइट वगैरह लगा हुआ है लगते है स्वर्ग दिखाई दे रहा हैं।

आप लोग देख सकते है यहाँ पे

देख सकते हैं और यहाँ पे भी बहोत सारे पेड़-वगेरा लगा हुआ हैं और हरा-भरा और यहाँ पर सारे